ये एक दुकान है। यहाँ पे बहोत सारे सामान है और ये और और और यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है जिसमे सामान रखा हुआ है। यहाँ पे पापड़ के पेकेट है मसाला है दाल आगिल है चावल आगल है। बिस्कुट दालमोट यहाँ पे कई तरीके के सामान रखे हुए है । और यहाँ पे यहाँ पे ऊपर छत है। छत का कलर ब्लू है।